यह इमेज किसी जंगल की लग रही है। जहां पे बहोत सारे झाड़-पेड़ नजर आ रहे हैं। दो भेड़ नजर आ रही है।

इस इमेज में तीन व्यक्ति खड़े हुए नजर आ रहे हैं एक बाइक खड़ी हुई नजर आ रही है पीछे यूनियन बैंक की--

बोट के अंदर बहोत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह इमेज किसी एवर फ्रेश की दिखाई दे रही है। जहां पर केक रखे हुए दिख रहे हैं।

घास नजर आ रही है पीछे दुकानें न नजर आ रहीं जिस पे बोर्ड लगे हुए हैं।

यह इमेज किसी चर्च की नजर आ रही है यहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए नज़र आ रहा हैं एक आदमी कुछ खड़ा हो कर समझाता हुआ नजर आ रहा है।

यह इमेज किसी ए_टी_एम के बाहर की नजर आ रही है। जहां पर अंदर कुछ लोग पैसे निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे--

अंदर ए_सी लगे हुए नजर आ रहा है।

नदी के उस साइड में कुछ रेलिंग लगी हुई नजर आ रही है पीछे झाड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं।

एक पेड़ नज़र आ रहा है सामने बहोत सारी--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

यहां बाहर रजवाड़ी लिखा हुआ है बड़ा गेट लगा हुआ है।

इस इमेज में बहोत सारी पत्तियाँ नज़र आ रही हैं कलर कि पत्तियाँ भी दिख रही हैं पीले कलर की और हरे कलर की पत्तियाँ नज़र आ रही हैं।

गैरेज के बाहर की नज़र आ रही है यहाँ पे बाहर एक वेन खड़ी हुई नज़र आ रही --

इस इमेज में कुछ गिटार रखे हुए हैं बॉक्स रखे हुए नज़र आ रहे हैं ढोल रखा हुआ नज़र आ रहा है।

सामने बेसिन लगा हुआ दिख रहा है। दो टेबलें रखी हुई नज़र आ रही हैं। कमरे में फैन लगा हुआ नज़र आ रहा है।

कुछ दूरी पर लोग चेयर पर बैठे हुए नजर आ रहें हैं।

अंदर लाईट लगी हुई नजर आ रही है। एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा है।

का डला हुआ नज़र आ रहा है।

एक व्यक्ति खड़ा होकर बात करता हुआ नजर आ रहा है।